वातावरण भी शुद्ध है साफ-सफाई भी ठीक है।

और एन्जॉय कर रहे हैं आसपास का वातावरण बहुत हीं शुद्ध दिख रहा है यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं जो की हरे-भरे हैं और इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं।

यह एक व्यायाम शाला यानि जिन जिम है जहां पे लोग एक्सरसाइज करने के लिए आते है अपने शरीर को फिट रखते है।

ये देख सकते हैं भीला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय है यहां पर जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं यहां पे पढ़ते हैं।

निचे छोटे छोटे ग्रास हैं जो की इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं।

यह देख सकते हैं गवर्नमेंट का राजकीय पॉलिटेक्निक पूर्णिया है | यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ने आते हैं |